ये एक फूलों की दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे हार टंगे हुए हैं और बहुत सारे रोज के फूल लगा हुआ है जो कि बहुत ही--

एक टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ हैं।

एक विंडो ए_सी भी यहां पे लगा हुआ है।

ड्रिंक की बोतलें भी रखी हुई हैं बहोत सारी।

बहुत सारे लोग यहां पर बैठकर जोगा कर रहे हैं।

बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं व्हाइट और ब्लू कलर के।

और एक गार्डन दिए गार्डन के अंदर बहोत सारे झूले लगे हुए हैं।

मीन के हरी घास भी लगी हुई है बिजली का खंबा और वायर वगैरा भी लगी हुई है।

और बहुत सारे वृक्ष वगैरा भी लगे हुए हैं जमीन के ऊपर--

हिमालय के पाउडर की बोतले भी पड़ी हुई है डाइपर पर लगे हुए हैं।

और प्लास्टिक के डब्बे भी पड़े हुए हैं।

और खिड़कियां वगैरह भी लगी हुई हैं दीवार के साथ दो चार्ट भी लगे हुए हैं।

उसने मुंह पर माक्स भी डाला हुआ है दूसरी चेयर्स पे एक बंदा बैठा हुआ है उसने हाथ में लिफाफा भी पकड़ा हुआ है।

एक बाल्टी और बाहर बोरियां भी रखी हुई है।